इसमें बोहोत सारे लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं।

मेज के ऊपर एक बैग भी रखा हुआ है।

आउर इसमें पेड़ भी दिखाई दे रया है।

अउर एक सूचि भी दिखाई दे रेयहा है। नीचे फरश भी दिखाई दे रेयहा है।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

और मकान के पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे।

इसमें बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

भिंडी भी दिखाई दे रही है मिरच भी दिखाई दे रही है।

दो पेड़ के बीच मां खड़ा हुआ है।

और छत में पंखे भी लगे हुए हैं और लाट भी लगी हुई है।

इनके आगे एक मेज भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में बहुत सारी बेंच दिखाई दे रही है।

और पेडे भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में बहोत सारी किताब दिखाई दे रही है।

और नीचे चादर भी बिछी हुई है।

आऊर एक औरत भी दिखाई दे रही है इन दोनों के चेहरे ढके हुए--

इसमें फरस भी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर मा खेल खिलौनों की दुकान दिखाई दे रही है।

तलाव के पीछे बहोत सारे पेड़ भी खड़े हैं।